ये एक पार्किंग पार्किंग जैसा नजर आ रहा हैं जिसमें पीछे सामने घर दिखाई दे रहा है रेड कलर व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा--

यह एक ढाबे जैसा है ढाबे जैसा दिखाई दे रहा है जिसमे--